अमूल का आइसक्रीम बिकता हे जिसका फ्रिज लगा हुआ हे.

ये एक हॉस्पिटल है जिसका नाम हेल्थ पॉइंट हॉस्पिटल है.

यह होटल राही हैं.

व्हाइट कलर का कैनोपी लगा हुआ है साइड में एक स्कूटी लगी हुई है.

येह कहीं का कंन्फ्रेंस रूम है जिसमें बोहोत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं.

कुछ कुर्सी और टेबल लगी हुई हे.

हरा हरा घास है स बगल में बाल्टी रखी हुई है.

अंदर में कुछ गाड़ियां लगी है स्कूटी लगी हुई है.

औ कुछ व्यक्ति है सामने में पो फूल वूल वगैरा लगा हुआ है सजावट के लिए.

एक कोई एक स्पोर्ट्स शॉप दिख लग रहा है.

ओर एक व्यक्ति पीछे खड़ा होके पिक्चर ले रहा है मोबाइल से.

बोहोत सारे छोटे छोटे चट्टान रखे हुई हे नीचेमे और कुछ नीचेमे घास पत्तियाँ भी दिख --

और पीछे मे एक व्यक्ति खड़ा हुआ कुछ हाथ मे लिए दिख रहा हे.

बगल में हेलमेट भी रखा हुआ हे और पीछे टेबल पे कुछ ब्लू कलर का रखा हुआ है.

एक पार्क हे का जुला लगा हुआ हे.

ऊपर में भी गमले में पेड़ पौधे लटक के लगे हुए हैं.

ओर कुछ कुर्सी कुछ टेबल और सोफे रखे हुए हे.

दीवाल पे फौरा टंगा हुआ है.

ये पत्ता गोभी का खेत है.

पासमे एक बाईक खड़ी हुई है.

इसमें कच्ची सडक दिख रही हे आने जाने के लिए.

यहां विक्रेता बैठ बैठा हुआ है कुछ कस्टमर खड़े हुए हैं.

इस पिक्चर मे चार गेट दिख रही हे.

चारो गेट बंद हे और कुछ पीछे में वृक्ष वगैरा है.